बिल्डिंग येलो कलर की है।

मशीन भी दिखाई दे र--

यह एक लकड़ी का हाउस लग रहा है जिसमें--

टोकरी है और चेयर भी है बैठने का टेबल है।

कुछ बाइक्स भी हैं बाहर चेयर पे एक लड़का भी बैठा है।

तालाब दिखाई दे रहा है।

वह हैंगर लगा हुआ है व्हाइट कलर का।

और ग्रीन कलर का मैट लगा है।

और किचन दिखाई दे रहा और एक लकड़ी का डोर दिखाई दे रहा है।

और ब्राउन कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

एक फैक्ट्री में खड़ी हुई है।

और एक खंभे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में ट्रैफिक दिखाई दे रहा है जिसमें ऑटो भी है।

बहोत सारे बच्चे योगा कर रहे हैं।

हाउस बनाया गया है कैंप का और--